एक बंगला है। बंगले के सामने एक बहोत बड़ा सा गार्डन है। गार्डन में एक झूला है। झूला वाइट कलर का है।

एक ने पिंक कलर की साड़ी पहनी है। एक ने वाइट कलर की पिंक कलर की साड़ी पहन कर वो गिटार --

सड़क है। सड़क पे दो बस खड़ी हुई है। एक हरी कलर की एक गुलाबी कलर की गुलाबी कलर की बस में सभी लोग चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।

एक रोड है बोहोत ही सुनसान सी रोड के बगल में एक थोड़ा सा पेड़ का जंगल एरिया है। उसके पीछे बड़े-बड़े पेड़ निकले हुए हैं।

पेंटिंग हुई है। घर के जमीन पर बहोत सारे गमले रखे हुए हैं जिसमें फूल बने हुए हैं। साइड में एक रंग-बिरंगा खम्बा भी है।

मेहरुन कलर की टी-शर्ट पहनकर वो हाथ में नोट गिन रहा है। सामने बहोत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं।

एयरप्लेन बच्चों के झूले बने हुए है।

एक डीजे है। डीजे में के साइड साइड बहोत तीन-तीन बहोत वूफर्स लगे हुए हैं।

डी.जे. के ऊपर एक थाली जैसा कुछ लगा हुआ है ब्लैक कलर का डी.जे. है उसके सामने एक जनरेटर भी रखा हुआ है।

सोफा सारा वाइट कलर का दिख रहा है। दीवाल पर फूलों से डेकोरेशन किया गया है। सफ़ेद लाइटें भी जल रही --

साइड में एक बड़ा सा मेरून कलर का गेट है। गेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है।

एक मस्जिद है मस्जिद वाइट कलर की है। बगल में एक पेड़ भी निकला हुआ है। सामने कि तरफ भी एक सूखा सा पेड़ निकला हुआ है।